यहां एक स्टेशन एरिया नज़र आ रहा हैं जहां शुद्ध पार्लर स्टॉल है कुछ पैसेंजर है।

जो ट्रेन का इंतजार कर रहे है शेरा एक स्टॉल है।

यह किसी स्कूल कॉलेज का फंक्शन हो रहा है जहा--

फ़ोन एक्सेसरीज बुक हैडफ़ोन --

मोबाइल रिपेयरिंग लैपटॉप रिपेयरिंग लैपटॉप ये सब सुधारा जाता है।

एक वॉचमैन खड़ा हैं आस पास काफी सुना हैं दिन का समय हैं।

घर है जो येल्लो और ऑरेंज कलर का पेंट है।

यहाँ कुछ पेड़ लगे हुए है ए_ सी लगे हुए है --

यह एक हॉस्टल रूम नजर आ रहा है जहां एक चेयर रखा है।

यह एक टाइल्स का फैक्ट्री नजर आ रह है जहा तरह तरहा का टाइल्स रखा हुआ है रेड व्हाइट --

ब्लू कलर --

पीकॉक है ब्लैक मुर्गी है एक पेड़ है दिन का समय --

यह एक कंप्यूटर शॉप है। जिसका नाम साईं पी_सी सॉल्यूशन है। यहां एक पंखा नजर आ रहा है।

जहा डेस्कटॉप लेपटॉप हेडफोन मोबाइल टॉवल पानी की बॉटल --

यह एक मंदिर है जहा एक पुजारी है कुछ लोग--

एक पुजारी दूसरे मंदिर पे खड़ा हुआ है केले के पत्ते नजर आ रहा है।

यह एक चर्च का बाहर का एरिया है चर्च रेड कलर का है।

दिन का समय है ब्राउन कलर की उसकी बॉल है ग्रीन --

यह एक मेला नजर आ रहा है जहां बड़े बड़े झूले नजर आ रहे हैं।

यह एक ट्रैन स्टेशन है जहां ट्रैन जा रही है।

एक व्यक्ति चढाव से उतर रहा है कुछ और--

कुछ लड़के भी पफॉर्म कर रहे है।

सूरज की किरणें पड़ रहे है हरी हरी घासे है कुछ पेड़ है।

है एक चढ़ाव रखा है स्टूल है कुछ बोरियाँ है।

दो स्टूल है एक मोबाइल रखा हुआ है एक डस्टबिन रखा हुआ है दो चेयर रखी हुई है।

यह एक वेडिंग हॉल है जहां रेड कारपेट है कुछ पंखे है एक कूलर है टी_वी लगा हुआ है।

ऑरेंज ग्रीन यल्लो फ्लावर का डेकोरेशन है यल्लो सो--

सूरज नजर आ रहा है रेतीली जमीन नजर आ रही--

यह एक जू नजर आ रहा है जहां दरयाई घोड़े है बड़े छोटे बच्चे--

कुछ बैठे हुए हैं एक पेड़ है एक घर है।

बच्चों का यूनिफार्म वाइट रेड कलर का है।

बोंटिंग गार्ड नर्स है यहां बोंटिंग होती हैं।

एक तराजू है इलेक्ट्रॉनिक दो भैया है।

भैया खड़ा है दो भैया बैठे हैं एक आंटी खरीद रही हैं।

यह एक मोबाइल शॉप है ओप्पो मोबाइल गैलरी --

यहाँ ओप्पो का अंब्रेला लगा हुआ है रेड कलर की बाइक ब्लैक स्कूटी --

दिन का समय है सुनसान एरिया है कुछ चप्पले हैं।

यह एक गार्डन है जहां दो अंकल नजर आ रहे हैं समुन्द्र तालाब नजर आ रहा--

नीला आसमान सुना स्विमिंग पूल --

यह एक वेडिंग फंक्शन चल रहा है जो फूलों से डेकोरेट है।

यह एक सन सेट एरिया है जहां पहाड़ नजर आ रहे है पेड़ नजर आ रहे कोहरा नजर आ रहा है सूना जग--